बहोत सारे पाइप भी दिख रहे हैं और बड़ा सा जमीन दिख रही है जिसमें हरी घास लगी है।

एक दो डस्टबिन नजर आ रहे हैं जो प्लेट्स रखने के लिए हैं।

सामने उसके घर नजर आ रहा है जो पोता हुआ नहीं है।

एक शांत ढाहरा हुआ पानी नजर आ रहा है जिसके बहोत दूर तक छोटे और बड़े पौधे नजर आ रहे हैं।

दो रिक्शे नजर आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी फुलकारी है।

ये एक बौद्ध का मंदिर दिखाई दे रहा है और इसमें बौद्ध की मूर्ति रखी हुई है।

इसमें कुछ बड़ी है कुछ छोटी है और एक दिया भी जल रहा है।

उसने ब्लैक कलर की एक जैकेट पहनी हुई है।

ये एक इ टूरिस्ट एयरपोर्ट नजर आ रहा है।

चेकिंग काउंटर लगे हुए हैं और इसपे कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं।

ये एक बहोत शान्त माहौल की बैठक नजर आ रही है।

इसमें कुछ टेबल भी दिखाई दे रही है और खिड़कियों पर पर्दे भी नजर आ रहे हैं।

बहोत सारे पत्थर भी नजर आ रहे हैं कुछ पत्थर छोटे हैं कुछ बड़े हैं और एक चिंपांजी भी नजर आ रहा है और एक फीस भी नजर आ रही है।

ये एक ब्यूटी सलून दिख रहा है और उसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं।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

और थ्री पुरुष और टू महिलाएं बैठी उम्म एक महिला बैठी हुई एक खड़ी हुई नजर आ रही है।

ये एक लोहे का जाल नजर आ रहा है और इस जाल के अंदर बोहोत बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

ये एक कपड़े की दुकान है और इसमें कुछ ब्लाउज भी टंगे है।

और इसके अंदर एक रेड कलर की कुर्सी भी रखी है।

ये एक हॉल है और इसमें भगवान जी का छोटा सा मंदिर भी है।

एक स्टूल पे बैठके काम कर रहा है दूसरा उसकी सहायता कर रहा है।

यह एक लकड़ी के खांचों में बहोत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक शादी हॉल दिख रहा है जिसमें ऊपर लाल कलर से सजाया गया है।